कुछ भी व्यक्ति यहां नहीं नजर आ रहे हैं कुछ मेडिसिंस टेबल पर रखी हुई और कुछ इलेक्ट्रिक बोर्ड्स नजर आ रहे हैं।

प्रतीत होता है की यह कोई बहोत ही बड़ा सा जिम है।

यह शाम का बहोत ही सुंदर सा नजारा है जहां पड --

दिखाई दे रहा है जहां पर नदियों के बीच लोग नाव से पीनी को खेवते हुए--

व्यक्ति भी नजर आ रहे हैं पेड़ पौधे और--

एक कतारे में लगी हुई है पीछे भी लगी हुई बसें हमें दिखाई दे रही हैं।

लगाए गए हैं जो कि बहुत ही अद्भुत लग रहा है और ऊपर हमें पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं सामने एक ग्राउंड भी दिख रहा है।

सामने कुछ पार्क में खेलने के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर--

प्रतीत हो रहा है यह एक बुक सॉप है जहां पे--

एक घर भी हो सकता है किसी का।

यह एक बहोत ही सुंदर सा भव्य मेले का आयोजन किया गया है।

एक सुंदर सा सामने बच्चों का खेलने वाला झूला भी नजर आ ड़हा है जहां पे कुछ बच्चे घुलट घुलट के खेल भी रहे हैं।

कुछ खाने के लिए अगल बगल टेबल्स भी लगे हैं जहां कष्ट--

के किनारे में लगा हुआ यह ठेला बहोत ही सुंदर फलों से भरा हुआ प्रतीत हो रहा है यहां पे--

प्रतीत होता है यह को कोई ऊंचा सा--

पुराना सब हवन नजर आ रहा है जो की काफी पुराने समय से बना हुआ प्रतीत हो रहा है जिसमें ईट--

खपरोल हैं मतलब बहोत ही पुराने हैं काफी बहोत ही बड़ी यह बिल्डिंग नजर आ रही है चारों तरफ खिड़कियां दरवाजे --